और ढेर सारी लाईटें जल रही हैं और पंखे चल रहे हैं। इसके बीचो बीच में एक पुल है जिससे पानी बह रहा --

यह एक रोड लाईट है जो बहुत ही सुन्दर है यहा पे ढेर सारी लाईट जल रही है आसपास बिल्डिंग है जो हरे नीले पीले रंग की है।

इसके आगे एक गार्डन है जिसके अंदर दो चार आदमी भाग रहे हैं। इसका किनारा पिले और नारगी रंग का बना हुआ है। इसके आसपास पेड़ पोधे का --

जैसे गुलाब का फूल यहाँ पे बीचो बीच में एक पंखा है और पूल भी है जो जिस पे पानी भरा और कुछ आदमी आपस में बात कर रहे हैं।

बहोत अच्छी है। इसके आसपास पेड़ पौधे बहोत अच्छे हैं। इसके बीचो बीच में एक सड़क है।

जुला जुल रहे इसके अंदर दो तीन खिलोने रखे हुए हैं। इसके आस पास आस पड़ोस में पेड़ पौधे काफी लगे हुए हैं।